ये ग्राउंड लग रहे हैं ग्राउंड में रोड बना हुआ है रोड में कुछ बाइक लगे हुए हैं एक बहुत सारे जंगल है पेड़-पौधे है खुला आसमान है।

यहाँ एक यहाँ पर खेत है आउ खेत में ट्रैक्टर खड़ा है कुछ गेहूं झड़ा रहा है और कुछ गेहूं लगे हुए हैं कुछ लोग खड़े है कुछ लोग काम कर रहे हैं साइकिल खड़ा है बहुत सारे पेड़-पौधे --

यहां कोई टूर टीम है जहां की बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग चल रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं बहुत लोग पीक ले रहे है बहुत सारे पेड़-पौधे हैं कुछ कलर वाले हैं।

एक कोचिंग सेंटर है जो कि कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं। कुछ कलर का सामान बना रहे हैं पेपर का। अ कुछ कलर कर रहे हैं कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं। खिड़कियां है। बहुत सारे बच्चे हैं ।

ये कॉलेज है कॉलेज के बगल में कुछ कुछ पेड़ लगे हुए हैं और कॉलेज बना हुआ है जो वो शीशे से शीशे से बने हुए हैं औ बहुत सारे --